फोटो में एक बाइक दिखाई दे रही है खड़ी हुई जिसके पीछे दो दरवाजे लगे हुए हैं लोहे के।

जो की एक बेंच पर पड़ी हुई है।

पास में ही एक बंडल और रखा है जो कि गत्ते का है।

और इस फोटो में सामने ही एक डेस्क दिखाई दे रही है जो कि एक मेडिकल शॉप है।

इस फोटो में सामने एक द् कार जाती हुई दिखाई दे रही है।

और सामने एक बाउंड्री है उस पर उसके पीछे एक पेड़ खड़ा हुआ है जो कि बहोत बड़ा है।

इस इमेज में एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें एक बड़ा सा शॉवर दिखाई दे रहा है लगा हुआ जिसमें पानी नहीं है।

और नीचे कुछ आदमी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर कुछ मालाएं झूमर टाइप पड़ी हुई है।

और सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके ऊपर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर--

पीछे की साइड कुछ मनुष्य के चित्र बने हुए है।

बच्चे बेंचों पर अपना कार्य परफॉर्म कर रहे हैं।

साइकिले ऊपर की तरफ को मुंह कर कर खड़ी हुई--

एक मेज रखी हुई है जो की फोटो के साइड में है।

और एक आदमी ट्रक पर पहले से ही मौजूद है।

फोटो में सामने बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

कुछ बेंचें आगे पड़ी हुई हैं और एक बेंच पीछे पड़ी हुई है।

पीछे कुछ पौधे और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक लड़का यहां पर बैट लिए खड़ा हुआ है।

के सामने ही एक ग्रिल लगी हुई है जो कि स्टील की दिखाई दे रही है।

यूनियन बैंक के अंदर एक ए_सी भी दिखाई दे रही है।